यहा पे अ स्टेजपे दुलहन धुला दिखाई दे रहे है नीचे कुच्छ लोग है डी.जे लगा हुआ है।

कुछ लोग अंदर नजर आ रहे है कुछ बाहर माता दुर्गा जिकि पंडाल है अंदर मूर्ति नज़र आ रही है बगल मे लाइट लगी हुई है और घर है।

यहाँ सामने एक लड़का बैठा हुआ है इधर देखते हुए नज़र आ रहा है पीछे बहुत सारे लोग जो अपना काम कर रहे है या नीले कलर का कॅरेट है जिसके हात मे उपर लाइटस लगी हुई है बहूत सारे पाइप लगे हुए है अ सरपे कुच्छ लगा रखा है।

यहाँ एक लड़की है जिसने रेड और गोल्डेन कलर का ड्रेस पहन रखा है और सामने की और एक हात रखे हूए--

बैठी हुई है और नीचे रेड ग्रीन कलर का कार्पेट लगा हुआ है पीछे कुर्सियाँ रखी हुई है जो व्हाइट कलर की है।

जहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमे जियो जियो लिखा है और अंदर जाते हुए कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है सामने एक बिल्डिंग सी बनी हुई है जिसमे एस बी आय लिखा हुवा है।

यहा पे एक टीचर खड़ी हुई है बहुत सारे बच्चे है जो कुछ बना रहे है कलर फूल ड्रेस में है उनके सामने टेब्लस रखी हुई है पीछे गमला रखा हुआ है चेयर्स रखी हुई है दूर में और भी बच्चे है।